एक खाली मैदान जहां पे कई सारे पेड़ दिख रहे हैं।

मंदिर मुझे दिखाई दे रहा है उस मंदिर का नाम श्री धरेश्वर महादेव मंदिर--

इस तस्वीर में मुझे यह दिखाईं दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर में पंडित मुरारी लाल तिवारी स्मृति गौ सेवा द्वार--

ढलता हुआ सूरज नजर आ रहा है यहां एक गार्डन का तस्वीर है जहां हरि हरि घासे--

जो कि कुछ खाना खा रही हैं कुछ घूम रही हैं कुछ बैठी हूं।--

हाथ मुझे काला नजर आ रहा है और फूल मुझे गुलाबी नजर आ रहा --

मुझे इस तस्वीर में दो सोफे नजर आ रहे हैं एक तीन थ्री सीटर सोफा एक वन सीटर सोफा नजर आ रहा--